में गंगा जी का पानी बहुत गन्दा लग रहा है।

ये एक जेंट्स पार्लर हैं।

ये एक खाली सड़क है।

बस स्टैंड के पास में एक बिल्डिंग हैं।